तिलक लगी हुई दिख रहा है बहोत सारे शामान दिख रहे हैं ब्लैक वाइट दिख रहे हैं सामने एक नीला कलर दिख --

बहुत सारे लड़के खड़े हुए दिख रहे हैं सेल्फी लेते हुए लेडिज दिख रही एक लड़की खड़ी दिख रही है रेड कलर का कपड़ा दिख रहा है मोबाइल दिख रहा है हाथों में |

पत्थरों पे बहुत सारी कलर्स दिख रहा पेड़-पौधे दिख रहे ग्रीन कलर के पत्थरों पर ग्रीन कलर जामुनी कलर दिख --

पत्तियां पड़ी हुई दिख रही है बहुत सारी पिंक कलर की ग्रीन कलर की जामुनी कलर की कत्थई कलर की रेड कलर की कचड़ा दिख रहा है पेड़ --

पौधे दिख रहे हैं मकान दिख रहा है गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है चद्दर सेड दिख रही है पेड़ो में ग्रीन कलर की पत्तियां दिख रहे हैं पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

मकान में नीला कलर लगा हुआ दिख रहा है चद्दर दिख रहे हैं।

ग्रीन कलर की पेड़-पौधे दिख रहे हैं पिंक कलर का कुछ टंगा हुआ दिख रहा है लकड़ी के मकान दिख रहे हैं एक ट्रॉली दिख रही है।